इसमें कुछ लाइटे दिख रहे इसमें कुर्सियाँ दिख रही इसमें एक एक बैट दिख रहा है जिसमें कुछ सामान दिख रहा है।

इसमे हरे कलर के पेड़ दिख रहे है इसमें झाड़ दिख रहे है इसमे मिट्टियां दिख रही है इसमें थोड़ा कचरा दिख रहा है इसमे दो बाइक दिख रही है उसके लाइट दिख रहे है।

खुबसूरत रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसमे लाइटिंग की सजावट दिख रही है इसमें कुछ--

इसमें सूरज दिख रहा है जिसका कलर सफ़ेद और थोड़ा रेड है इसमें सफ़ेद कलर का बादल दिख रहा है इसमें फ़र्श दिख रहा है।

इसमें उनका कलर ओ- इसमें उनका कलर ऑरेंज दिख रहा है इसमें गेट दिख रहा है जिसका कलर आसमानी दिख रहा है।